आप देख सकते है यह एक वाटर पार्क का व्यू लिया गया है और इक इसमे तीन लड़के दिखाई दे रहे है जो एक दूसरे का हाथ पकड़े हुए हैं।

और एक स्लाइडर के मदद से वो नीचे जा कर अपना एंटरटेनमेंट कर रहे हैं।

और सामने व्हाइट बोर्ड भी दिख रहा है शायद हो सकता है ये उसमें कुछ देखना चाह रहे हैं एल.ई.डी. स्क्रीन लगा हुआ है उसमें कुछ दिखाया जाएगा और ये रात का मौसम है लाइट जल रहा है।

बहुत सारे हिरण दिख रहें हैं जो की एक झुंड में हैं ये कोई ज़ू जैसा लग रहा है की जैसा --

और दिन का समय है यहां पे आप आकर स्नान कर सकते हैं। बहोत ही आनंद रहे --

ऑटो ड्राइवर नहीं है ऑटो पूरा खाली पड़ा हुआ है और साथ में देख सकते हैं यह सरकारी काम के जो पोस्टर है वो लगे हुए हैं यहां पे।

जैसा कि आप देख सकते हैं यह एक बहुत ही सुंदर और पुराना घर का फोटो लिया गया है।

पास है आप यहां आइये और यूनिसेक्स हेयर का मजा लीजिए और ब्यूटी सलून भी है।